और क्रीम कलर का कैप्च भी है कुच्ची है घास हैं।

ये एक ये एक साधु संत है कई सारे वो कुछ बजा रहे हैं।

ये एक बैंक है। बैंक के बाहर एक बाइक खड़ी है लेबो नीले कलर की व बैंक --

नीले रंग का आसमान है जो कि दिख रहा है इस पिक्चर में और बड़ा --

यह एक ऑफिस लग रहा है किसी चीज का और कृष्ण जी की मूर्ति है व्हाइट रंग का पंखा है एक ऊपर पंखा लगा है। व्हाइट रंग का लिन्टर है।

इसमें म्म मशाला बेचकर रुपए कमाते हैं। कई लोग सौदा लेते भी हैं दुकान से।